बोर्ड रखा गया है जहां पर बच्चों के पढ़ाने के लिए--

यहां पर बहुत सारे लड़कियां नाच रही है।

ग्राउंड पर खेल रहा है और उसके ठीक साइट पे ही बहुत बरा बरा लाइट है जो की ग्राउंड को उजाले उजाली--

और इनके ठीक अंदर ही एक छोटा सा मंदिर इन्होंने बनाके रखा है।

यह एक होटल है जो की--

यह एक दुकान है जो कि नीला कलर का है उसके ठीक ऊपर ही--

इनाम पर होर्डिंग चढ़ा हुआ है जो की।

कार्य कर रहा है और ठीक उनके नीचे ही एक--

सफेद कलर का कपड़ा पहेना हुआ है।

और ये मुझे लगता है ये घर बहोत पुराना है।

अलग अलग कलर अलग अलग--